यहां पर काफी लोग बैठे हुए हैं।

यहां पर दो तीन लेडीस खड़ी हुई हमें दिख रही है मतलब यहां खादी का सामान मिलता होगा।

और आसपास टैटू बनाने का सामान प--

यहां पर पिंक और व्हाईट कलर के गुब्बारे लगे हुए हैं।

रेड कलर की फैंसी चेयर रखी हुई है और बहोत ही सुंदर रूम डेकोरेट किया हुआ है।

यहां हम देख सकते हैं कि--

और देखने में यह थोड़ा पुराना भी लग रहा है एक्टिवा भी यहां--

यहां हम देख सकते हैं कि यह एक--

और दो तीन गाड़ियां यहां नज़र आ रही है ऊपर घने बादल दिख रहे--

और अभी यहां पर पहाड़ नजर आ रहे हैं।

भी बोहोत से खिलौने नजर आ रहे हैं।

घास फूस यहां पर सुंदर दिख रहा है।

यहां पर कई लोग जिम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां हम देख सकते है की यह एक --

स अह फ़व्वारा चलता हुआ नजर आ रहा है।

टेबल रखा हुआ दिख रहा है और--